फोटो में छत पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफिस है।

जो ऊपर को जाती है उसके साइड मे दो बन्दे खडे हैं जो एक काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा है और एक कस्टमर दिखाई दे रहा है।

एक मोटर गैराज दिखाई दे रहा है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक सायकल खड़ी है।

जिम का नाम है न्यू फ्लेक्स जिम ।

एक पाइप लाइन का कनेक्शन है।

एक स्कूल या कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग है।

बीच में खाली जगह है।

पारक के बीच में एक पेड़ है।

जिसमें रैक में काफी सामान रखा है।

की तैयारी करवाता हैं।

एक व्हील एलाइनमेंट की दुकान है।

जिस पे लिखा हुआ है।